इस पर लिम्रा मोटर्स लिखा हुआ है।

स्टेज पर कुछ लाइटिंग लगी है।

इस फोटो में एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

छत पर कुछ लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

इसमें ज्यादातर गिटार दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे लकड़ी का सामान दिखाई दे रहा है।

यह फोटो किसी पैलेस का लगता है।

इस फोटो में एक बड़ा पैलेस पर कुछ लाइटिंग और कुछ लड़ियों से सजावट की गई है।

यह एक कुर्सी पर बैठा है।

जो ऊपर की ओर जाती दिख रही है।

यह फोटो किसी कॉलोनी से लिया हुआ लगता है।

एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें से वायर निकल रहे हैं।

पहाड़ भी दिख रहे हैं।

इनके मुंह को ब्लर किया गया है।

पीछे की डिग्गी भी खोल रखी है।

और भी कुछ सफेद कलर की छोटी पेटियां रखी दिखाई दे रही हैं।

साइड एक कुर्सी भी पड़ी है।

यह फोटो किसी स्कूल या ग्राउंड से लिया गया है।

और एक खाली मैदान दिख रहा है जिसके--

बड़ी बड़ी दीवालो से घेराबंदी की गई है।

और कुछ बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इनके ऊपर एक लंबा विम पड़ा है।

कुछ झूले और कुछ रिपटने भी लगे हैं।

जिसने पेले कलर की टोपी ओढ़ रखी है।

यह फोटो किसी टेलर की दुकान से लिया गया है।

साइड में कुछ संगीत का सामान है।

यह फोटो किसी हलवाई की दुकान से लिया हुआ लगता है।

श्री साईं ऑटो गैस रिपेयर लिखा हुआ है।

साइड में कुछ सीढ़ियां भी ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही है।

अभी लाइटिंग और कुछ लड़ियां लटकी गई हैं।

इस फोटो में एक बड़ा किला लगता है।

इस फोटो में कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।